एक बोट है और कुछ आदमी इसे धक्का दे रहे हैं कचरा सब है हरा-हरा घा घांस और नीला - काला आसमान दिखाई दे रहा है पानी है।

साइकिल देखने के लिए मिल रहा है और वहाँ पे एक गाड़ी भी है एक आदमी गाड़ी चलाते हुए और एक आदमी पीछे बैठे हुए दिख रहा है अभी--

कार है आ आम गाछी भी है गिट्टी बालू है घास है और तार लगा हुआ है। ऊपर में पानी का टैंकी है।